इस तस्वीर में हमें बहोत सारे लोहे के पिलर दिख रहे हैं और ऊपर में कुछ पंखे भी लगे हुए हैं।

इस तस्वीर में हमें एक सायकल दिखाय दे रही है।